एक जैसे गेटे बनाए हुए दिखाई दे रही है ऊपर दो वाइट कलर की लाइटिंग वायक्टिंग जलती हुई दिखाई दे रही है सामने--

ऊपर की ओर व्हाइट कलर की लैटिन लैटिन जलती हुई दिखाई दे रही कई सारे पंखे-वखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आजू बाजू सब बैलून लगाए गए हैं इतने सारे बैलून लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। साम--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

पूरा आसमान नीला दिखाई दे रहा अजीब अजीब सारे--

सामने की तरफ दिवाले पाइप रखी हुई दिखाई दे रहें है।

जिधर प्लास अलमारीयां सलमारियां बनाई गई--

गोल गोल घूमता दिखाई सामने काफी सारे।